सीधे में एक घर भी नजर आ रहा है।

यह चित्र एक इस्कूल का है।

यह एक रूम है यहां पे एक दौड़ने वाली मशीन लगी हुई है और नीचे में टाइल्स भी।

घर में लाइट भी लगाए गए हैं।

यह चित्र एक स्टेशन का है यहां चढ़ने के लिए सीढ़ी लगी हुई है।

यह चित्र एक हॉस्पिटल का है।

यह चित्र एक दोकान का है।

साइकिल के ऊपर प्लास्टिक और पेपर भी लगे हुए हैं ।

व्हाइट कलर का डोर भी नजर आ रहा है ।

यह चित्र एक खाने पीने की दुकान का है।

यह एक योगा करने वाली जगह है।

और यहां पे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं योगा करते हुए।

एक लोहा का खंभा भी दिख रहा है।